उस कॉलेज के बहार काफी सारे वहन खड़े हुए हैंवह इस तस्वीर मे हमे तीन व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति महरून शर्ट और काला पे-पेन्ट पहने हुए है।

यह तस्वीर एक गुफा की है जो की बाहर से ली गई है।

इस-इस इमारत का रंग वह इसकी बाउंड्री की दीवारों का रंग नारंगी है जिसमे सफेद रंग से डिज़ाइन बनाई गई है।

इतनी छोटी-छोटी टॉर्चो से इस गुफा को देख रहें हैं वह उनमे से एक व्यक्ति पीली टी शर्ट पहना हुआ है।

कमरे निकाले गए हैं वह उसके आगे एक सीमेंटेड सड़क गई हुई है उसके पीछे काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ भी है।